ये एक पार्क है पार्क में एक कुर्सी लगा हुआ है।

घर के बाहर ढेर सारे फूल के पौधे लगे हैं।

पेड़ के साइड से रेलिंग बनाया गया है।

पीछे एक लड़का खड़ा है।

पार्क के पास में हरे-हरे घास हैं।

पार्क में बाउंड्री किया हुआ है।

एक महिला लेडीज है।

बॉक्स गाड़ी पे रखा हुआ है।

इसमें इस हार्मा ऑडियो लिखा है।

बगल में एक घर है।

हैंगर में कपड़े टंगे हुए हैं।

एक गैस रखा हुआ है।

योगा क्लास में एक महिला लेडीज खड़ी है।

एक सर हैं योगा सिखला रहे हैं।

यह ग्रोसरी आइटम का मॉल है।

ऑफिस में लाइट लगा हुआ है।

एक पंखा लगा हुआ है।

ये एक मेला का दरवाजा है।

दरवाजे को सजाया गया है।

छोटे-छोटे स्टॉल लगे हुए हैं।

ये एक पार्क है पार्क में तरह-तरह के झूले लगे हुए हैं।

पेट्रोल पंप में ढेर सारा लाइट लगा हुआ है।

एक सिलेंडर रखा गया है।

दो आदमी सोफा के पीछे बैठे हुए हैं।

अंदर ऊपर में कांच लगा हुआ है।

बांस और जाली लगा हुआ है।

मॉल में टी_शर्ट नाइटी नाईन और वन नाइटी नाइन का ऐड कर रहा है।

सारे हैंगर पे टी-शर्ट लगा हुआ है।

एक आदमी टी-शर्ट देख रहा है।

बहुत सारे गाड़ियां लगी हुई है।

रोड पे एक गाड़ी खड़ा है।

छोटे-छोटे घास जमे हुए हैं।

पीछे बड़े-बड़े फ्लैट हैं।

अंदर बहुत सारे कपड़े डमी में लगाए हुए हैं।

बिजली का तार दिख रहा है।

रेस्टोरेंट में टेबल लगे हुए हैं।

बैठने के लिए चटाई लेकर के आए हैं।

दीवार पे गुलदस्ते लगे हैं।